और अपने मुँह को एक दूसरे की तरफ घुमा कर उसको देख रहा है।

खूबसूरत सा अस्पताल है और अस्पताल के सामने ऐ --

एक खूबसूरत सा बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित कर रही --